इन ट्रकों का रंग हल्के लाल रंग का है।

एक बड़ा सा शोरूम नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी कांच की टेबल नजर आ रही है।

इस मार्केट पर दो ए_टी_एम भी मौजूद हैं।

एक ए_टी_एम आंध्रा बैंक ए_टी_एम है तथा दूसरा एक्सिस बैंक ए_टी_एम भी है।

इस न्यायालय का नाम जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश है।

मुझे इस फोटो पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है।

यह मंदिर का एक बड़ा सा सेट बनाया गया है।

सजा हुआ हैं तथा इस ऑफिस पर बहोत सारी कुर्सियाँ भीं डली हुई हैं।

वह इस क्लास रूम पर बहोत सारे बच्चे एक ही रंग की ड्रेस पहने हुए बैठे हुए हैं।

इस तुलना के में बड़े बड़े ट्रक भी खड़े हुए हैं तथा कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

मुझे इस फोटो पर एक डॉक्टर का क्लीनिक नजर आ रहा है।

इस क्लीनिक पर बहुत सारी कुर्सियां बिछी हुई हैं तथा कुछ मशीनें भी मौजूद हैं।

मुझे इस फोटो पर एक फूलों की दुकान नजर आ रही है।